और आप इधर घूमने उमने जा सकते हो--

रूम वगैरा भी बना हुआ है और होटल स्कूल --

पैम वगैरह है इसमें पेड़ पौधा को पानी से पटाया जा रहा है।

यह एक देखने में रूम जैसा लग रहा है।

दिखने में एक होटल जैसा भी लग रहा है यहां पे मोर्न इसका दिल्ली अधिकतम बचत ऐसे करके कुछ नाम भी है।

और इस पुल से आप आ जा सकते हैं आराम से यह पुल बहुत मजबूत से बना हुआ है।

आ इसके बगल में एक स्कूटी भी खड़ा हुआ है बहुत बड़ा--

एक बड़ा बहुत बड़ा ये मैरेज हॉल देख जैसा लग रहा है।

और यहां से आप लोग यात्री जा सकते हैं यह महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है।

और बहुत सारा स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ भी है।

और यहां पे ये सहल जैसा लग रहा है देखने में --

आप यहां पे जा सकते हो घूमने के लिए--